एक रैंप तैयार किया गया है| रैंप के चारो साइड में बैठने के लिए जगह तैयार की गयी है और यहाँ पे गेस्ट के लिए भी जगह रखी हुई गयी --

नजर आ रहा है बड़े-बड़े पोस्टर वगैरह नजर आ रहे हैं। कुछ लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और कुछ हैप्पी नजर रहे हैं रास्ते के जो है बीचों-बीच नजर आ रहे हैं और यहाँ पे काफी धूप पड़ी हुई है और समझ में आ --